यहां पे ब्लू कलर का एक बाइक भी है जो नीचे दिख रहा है।

यहां साइड में कुछ लकड़ी का बना कर रखा हुआ है।

इसमें हरे कलर का हरे नारंगी ब्लू येलो कलर का एक होल स्लाइड भी बना हुआ है और एक पीला कलर का सीधा स्लाइड है।

यहां पे एक सी_सी_टी_वी लिखा हुआ पोस्टर भी है जोकि ब्लू कलर का है।

होम्योपैथिक दवा खाना भी लिखा हुआ है।

साइड में हिरण का मुकुट भी है।

ऊपर में कोको कोला का फोस्टर भी रखा हुआ है।

यह एक पीले कलर का गुमटी में बना हुआ है।

यह एक झरना का दृश्य है जहां चट्टान पर से पानी गिर रहा है।

टान पे पूरी सूर्य की रोशनी भी दिख रही है।

नीचे में टाइल्स लगा हुआ हैं जो की सफेद कलर का है।

यहां पे बहोत सारे टेबल भी रखें हुए हैं जिसपे पिंक कलर का टेबल क्लॉथ डाला गया--

एक ब्लू कलर का गेट का दुकान भी है जो कि बंद है।

हां पे दिवाल का कलर सफेद है।

यहां पर आदमी का है हाथ टेबल पे है और टेबल का कलर रेड कलर है।

यह एक कारखाना का दृस्य है जहां पे खाना बन रहा--

यहां पे एक टंकी वाली गाड़ी भी है।

यह एक मंदिर का दृश्य है जहा पे सफेद कलर का मंदिर बना हुआ है।

यह एक स्कूल के बाहर का दृश्य है जहां पे हत्ता पीला कलर का--

यह एक फंसन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक झंडा का खंभा भी लखा हुआ है।

यहां पे सीढ़ी भी बना हुआ है।

उसके ऊपर पीला कलर कलस भी है यहाँ पे एक पेड़ भी है जो कि काफी बड़ा है।

एक आदमी अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए हैं।

यहां पे आगे में रेड कलर का पोस्टर है। जिसमें वेलकम लिखा हुआ है।

जिसके एक दीवाल है जिसके ऊपर मिश्रा जी का पंजाबी ढाबा लिखा हुआ--

पर प्लास्टिक और रस्सी की वजह से सजाया गया है।

यहां पे चारो ओर हरियाली ही हरियाली है यहां पे ढेर सारे खजूर के पेड़ भी दिख रहे हैं।